पूल दिखाई दे रही है पूल के नीचे बहुत सारे पानी दिखाई दे रही है दिवाले नजर आ रही है और यहाँ पे कुछ माटी पडी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ मुझे बहुत सारी घासे दिखाई दे रही है और यहाँ पे--

एक कॉलेज दिखाई दे रहा है बड़ा सा कॉलेज दिखाई दे रहा है कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और बहुत सारी बिल्डिंग विंडो नजर आ रही है गेट नजर आ रहे हैं और बहुत सारी मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है और यहाँ पर बहुत फिल्म लोग भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत--

और कुछ अलमारियों मे रखे हुए दिखाई दे रहे है और ये--

मीठा रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोग खरीदते हुए नजर आ रहे है यह मुझे दो व्यक्ति नजर आ रहे है एक व्यक्ति फोन में बात करता हुआ नजर आ रहा है और भी समान दिखाई दे रहे।

किला दिखाई दे रहा है और किला के पास मुझे एक छोटा सा पेड लगा हुआ दिखाई दे पेड़ की पत्तियां नजर आ रही है दिवार में कुछ पुराने दिखाई दे रही है और उसमें कुछ दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है बहुत से वाहन भी नजर आ रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे खंबे दिखाई दे रहे है।